जो हमारे सामने तस्वीर देख रहे हैं ये एक फलों की दुकान है जहां पर हमको टोकरी में सजाए गए ढेर सारे फल दिखाई दे रहे हैं केले हैं।

सेब है संतरा है आम है अनानास है मौसंबी है केलों को ऊपर अ छत दुकान की छत से लटकाया गया है और टोकरी में आमों को--

और उनके साथ वहां की जनता भी साथ साथ में चल कर इस जलसे मैं पूरा सहयोग--

हमारे सामने जो दृश्य देख रहे हैं ये किसी मिठाई की दुकान का दृश्य जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहां पर--

बहुत सारी मिठाइयां हमारे सामने काउंटर पर सजाई गई है और बहुत ही अलग-अलग प्रकार की मिठाइयां हमें दिख रही है जैसे बर्फी रसगुल्ला।

ये है आसपास में पेड़ भी बड़े हैं और बहुत सारे बैठने के लिए बेंच भी ल--

यहां पे बहोत ही आकर्षक अलग अलग रंगों में विभिन्न प्रकार के डिजाइनों से डिजाइन किए हुए--

लाल रंग से लंगी रंगी गई हैं और उसके सामने फुट चलने के लिए जो फुटपाथ हैं उसके सामने छोटे छोटे छोटे पौधे भीं लगे हुए हैं।

हमारे सामने दिए गए चित्र में हम देख सकते हैं ये जो एक बिल्डिंग है बिल्डिंग का ये पार्किंग लोट है पार्किंग लोट का मतलब जहां पर लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं।

हम जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये किसी शॉप की तस्वीर है जहां पर ये एक ब्यूटी पार्लर का दुकान का तस्वीर है जहां पर महिलाएं अपने--

सजाने धजाने के लिए जाती हैं अपने बाल कटवाने अपने चेहरे के निखार के लिए फेशियल वगैरह करवाने जाती है।

देख सकते हैं सामने शीशा लगा है और शीशे के सामने एक कुर्सी लगी है इसी कुर्सी पर बहुत बैठकर महिलाएं अपना मेकअप वगैरह करवाती हैं और अपने--

इसमें से धुंआ निकल भी रहा है और हम नीचे देख रह सकते हैं बिल्डिंग के बगल में पेड़ भी लगे हुए हैं और बिल्डिंग की छत लोहै के आकार से कुछ न--

और यहां पर मिल जाएगी बच्चों की तो ये फेवरेट जगह की होगी और मेरी भी क्योंकि मुझे भी आइसक्रीम बहोत ज्यादा--

पास जाने पे ही पता चलेगा इसके सामने जो चम स्मारक के आगे बोर्ड लगा है उस बोर्ड मे हम इसका पूरा इतिहास लिखा गया होगा यह कौन सी बिल्डिंग है और इसका नाम --

अगर इसको ठीक नहीं किया गया किसी के ऊपर गिर जाएगा अगर गिर गया तो किसी को चोट लग जाएगी वो घायल हो सकता है अभी घायल हो गया तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़--

सड़क के बीचों बीच ट्रैक्टर की तस्वीर खींची गई है और साम अगल बगल में दुकान या घर हो सक--